नीले रंग की कुर्सी पे कुछ छिप गया है और खुला टी_शर्ट पैंट रखी हैं।

बड़े बैठे हुए हैं और पीछे पर्दे लगे हुए हैं रंग बिरंगे।

पिड़े कलर का कलर हुआ हुआ हुआ है और मेज रखी है मेज प कपड़े रख बिछा हुआ है और--

फूल लगे हुए हैं पीछे तार उँ बिजली के तार नि--

नेट है घास है बड़ा सा रेत है धुंधले धुंधले कुछ और बिल्डिंग दिखाई दे पीले पीले रंग की है लाल पीला पाइप --

एक ट्रक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है बड़े अह टायर हैं छोटे टायर हैं पीछे वो--

सटल है। कई दुकानों के ऊपर पोस्टर लग रहे हैं।

रोड पर कचड़ा खन रहा है आशा ब्यूटी पार्लर का एक और बोर्ड लग रहा है

गड्डी खड़ी है वैन है सड़क पूरी चौड़ी कचरा पीले रंग की है।

एक खेत है वह तो बता जिसमें दो घोड़े हैं सफेद और काला--

यह एक मैकेनिक की दुकान है जिसमें गड़ी तो लग रही है।

लाइट के बॉक्स हैं तारे बहोत सारे तार है मोटे तार काड़े रंग के साइड में लिले अ लाल--

मशीने भी है पौधे लग रहे है हरी हरी घास है ग्राउंड चौड़ा है लोहे का काम चल रह्या है फैक्ट्री है।